दोस्तों bash में logical operators के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
* logical and
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न का ज्ञान होना चाहिए
बैश में * ifelse statement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
इस tutorial के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 os
* gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब logical operators का प्रयोग समझते हैं
* logical operators मुख्यतः program के प्रवाह को नियंत्रित करने में प्रयोग होते हैं
* logical operators दो expressions या conditions को जोड़ने में मदद करते हैं
* ये if while या कुछ अन्य control statements का भाग हो सकते हैं
अब logical and का syntax देखते हैं
* square bracket खोलें space dollar symbol condition1 space square bracket बंद करें space ampersand ampersand space square bracket खोलें space dollar symbol condition2 space square bracket बंद करें
* या हम यह syntax प्रयोग कर सकते हैं
* square bracket खोलें space dollar symbol condition1 space hyphen a space dollar symbol condition2 space square bracket बंद करें
* logical and true returns होता है जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों true हों
अब logical or का syntax देखते हैं
* square bracket खोलें space dollar symbol condition1 space square bracket बंद करें space vertical bar दोबारा vertical bar space square bracket खोलें space dollar symbol condition2 space square bracket बंद करें
* या हम यह syntax प्रयोग कर सकते हैं
* square bracket खोलें space dollar symbol condition1 space hyphen o space dollar symbol condition2 square bracket बंद करें
* logical or true returns होता है जब कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से कोई एक true हो
अब एक उदाहरण प्रयोग करके logical and और logical or का उपयोग करना सीखते हैं
मैंने logical sh named file में पहले ही code टाइप कर लिया है
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl + alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
type करें: gedit space logical sh space & साइन enter दबाएं
अब अपनी logical sh file में यहाँ प्रदर्शित की तरह code type करें
अब मैं code समझाती हूँ
यह शीबैंग line है
read command मानक input से data की एक line पढ़ता है
hyphen p prompt को दिखाता है
string variable है जो निष्पादन के दौरान यूज़र के द्वारा प्रविष्ट किये हुए text को संचित करता है
if statement जाँचता है कि the प्रविष्ट किया हुआ string खाली है
hyphen z जाँचता है कि क्या string की लम्बाई zero है
terminal पर type करें man space test अनेक दूसरे string कम्पैरिसन का अन्वेषण करने के लिए
अगर कुछ भी print नहीं किया गया था तो echo statement एक message print करेगा
अगर string खाली नहीं है तो program पहले elif statement पर चला जायेगा
यहाँ जाँचते है कि क्या प्रविष्ट किये हुए string में raj और jit दोनों शब्द हैं
यदि हाँ तो यह एक message echoes करता है
ध्यान दें कि logical and यहाँ प्रयोग किया गया है
अतः message केवल तभी प्रदर्शित किया जायेगा जब दोनों conditions संतुष्ट होंगी
अगर नहीं तो program दूसरे elif statement पर चला जायेगा
यहाँ यह जाँचता है कि क्या प्रविष्ट किये हुए string में raj या jit हैं
यदि हाँ तो यह message प्रदर्शित करेगा
कृपया ध्यान दें कि logical or यहाँ प्रयोग किया गया है
message प्रदर्शित किया जायेगा जब कोई एक conditions संतुष्ट हो
अंततः हमारे पास default else statement है
जब सारे उपरोक्त statements false हों तो यह statements निष्पादित किया जायेगा
fi multilevel ifelse loop का अंत है
अब program को निष्पादित करते हैं
terminal पर वापस आते हैं
पहले file को निष्पादन के योग्य बनाते हैं टाइप करें chmod space plus x space logical dot sh enter दबाएं
अब type करें dot slash logical sh enter दबाएं
prompt दिखाता है enter a word:
मैं jitinraj प्रविष्ट करूँगी
output है : jitinraj contains both the words raj and jit
इसका मतलब है कि control दूसरे statement को पास किया गया था
और चूँकि दोनों conditions संतुष्ट होती है यह message दिखाता है
अब दोबारा script को निष्पादित करते हैं
up arrow key दबाएं
/logical sh पर जाएँ enter दबाएं
prompt प्रदर्शित करता है enter a word:
इस बार मैं abhijit प्रविष्ट करूँगी
output प्रदर्शित होता है: abhijit contains word raj or jit
कृपया भिन्नभिन्न inputs के साथ program के निष्पादन की कोशिश करें और output देखें
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
अब logical not operator पर एक नज़र डालते हैं
* यह expression की boolean value को उल्टा करता है
* जिसका मतलब है यह true returns करता है यदि expression false है
* और false returns करता है यदि expression true है
logical not operator का syntax है
* exclamation mark space expression
या square bracket खोलें space exclamation mark space expression space square bracket बंद करें
एक उदाहरण देखते हैं
मैंने file में code पहले ही लिख लिया है
अतः मैं terminal पर जाऊँगी और type करें gedit space logicalnot dot sh space ampersand sign enter दबाएं
अब अपनी logicalnot dot sh file में यहाँ प्रदर्शित की तरह code type करें
यह shebang line है जैसा हम पहले से जानते हैं
$1 script को passed किया हुआ पहला command line argument है
hyphen f जाँचता है कि यदि file उसी name के साथ है जो argument की तरह पास किया गया था
अतः यह true return करता है अगर फाइल है और false return करता है अगर यह नहीं है
यह not operator यहाँ रिटर्न की हुई value को उल्टा करता है
जिसका मतलब है यदि एक file जिसका name विद्यमान है वो condition true होगी
लेकिन not operator इसकी value को false में उलट देगा
और यह message प्रदर्शित करेगा file does not exist
यहाँ else statement में यह message दिखाता है file exists
fi if loop के अंत को दिखाता है
अब terminal पर आते हैं
मैं prompt clear करती हूँ
अब test txt name के साथ एक खाली file बनाते हैं
टाइप करें : touch space test dot txt enter दबाएं
आगे script को निष्पादन योग्य बनाते हैं टाइप करें:
अब type करें dot slash logicalnot dot sh space test dot txt enter दबाएं
हमारी shell script जांचेगी कि क्या फाइल विद्यमान है
हमारी file test dot txt विद्यमान है इसलिए value true होगी
फिर logical not उस value को उल्टा करेगा और false return करेगा
क्योंकि मूल्यांकन false है तो else statement मूल्यांकित किया जाता है
और प्रदर्शित message हैfile test txt exists
argument test1 txt के साथ program को दोबारा निष्पादित करने का प्रयास करें
और पहले समझाए गए की तरह control flow को देखें
अपनी slides पर वापस आते हैं सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
एक नियत कार्य में
जाँचें कि क्या file विद्यमान है
और निष्पादन योग्य है
* इसके लिए tutorial में समझाए गए logical operators प्रयोग करें
* hint: man space test
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस script का योगदान fossee और spoken tutorial team द्वारा दिया गया है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद